ये तो मैकेनिक है और यह फ्यूल पंप खराब हो गया है।

और यार इसके अंदर डबल बेड कितना अच्छा लग रहा है यार बिस्तर इस पे ।

अरे यार कितनी अच्छी गाड़ी है यार बच्चों की यार।

और भाई यार कितनी अच्छी यार क्वालिटी बनाई है यार। इसके रेड कलर के दिल बनाये हैं यार भाई।

हां भाई यार कितने अच्छे अच्छे फल है यार भाई लग रहा है ऐसा यार दुकान पर रखो यार बिक रहे हो यार --

नाई की दुकान है यार भाई कितनी अच्छी यार दुकान लग रही है भाई और इस लड़का कटिंग करता है इसने ड्रेस पहन रखी है भाई --

उस तरह से कैंची से काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है यार इसने अपनी दुकान पर।

यहाँ पर तो यार पिज़्ज़ा भी मिलता है।

वाह यार कितना शानदार हाल लग रहा है भाई --

इतनी साफ सफाई है कि ऊपर की लाइट और नीचे टैलो में दिखाई दे रही है यार इसके तो --

कितना अच्छा पार्क है यार ये और इस पार्क में कितना बढ़िया झोला लग रहा है यार --

और इस पे एक बच्चा यार झूला झूल रहा है यार कितना मजा आ रहा होगा यार इस बच्चे को यार झूलने में यार।

मैं भी यार अपने पार्क में ऐसे झूले लगवाता हूं यार इन सब बच्चों को झुलाने के लिए --

और एक लेडीस ने अलग बांध रखी है अलग ही सबसे क्योंकि क्या पता ये इनकी हेड हो यार --